में वहां पे खूब सारा गुब्बारे भी लगा रखे हैं और भी यहां पर अलग अलग डिजाइन भी हो रखी है वहां पर दो पंडित जी बैठे हुए हैं।

एक अक्षदीप पब्लिक स्कूल है है यहां ये बहोत बड़ा स्कूल है ये नर्सरी से बारहवीं तक का स्कूल है और बाहर --

हमर का रेस्टोरेंट है यहां पर बहोत अच्छे डिजाइनें वगैरह भी हो रखी है साथ में --

वे लगे हुए हैं घांस वगैरह और एक छोटी सी झोपड़ी भी वहां पे बनी हुई है बादल--